जयकुमार उच्च माध्मिक विद्यालय है। यह विद्यालय देखने में काफी पुराना लग रहा है। इस विद्यालय में अभी बच्चे नहीं हैं। यह विद्यालय अभी बंद है।

यहाँ पर हम एक छोटे बच्चे का स्कूल को देख पा रहें हैं। इस स्कूल का नाम रजनी सेंट्रल स्कूल है। यहाँ पर छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है।

अच्छा लग रहा है। इस लड़के ने तैयार होकर इस फोटो को लिया है। ये लड़का स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ है।

यहाँ पर हम एक छोटे से दुकान को देख सकते हैं। इस दुकान में बहुत सारे बच्चों की खाने की चीज़ें हैं जैसे बिस्किट चोकलेट चिप्स बहुत --

बिस्किट है और भी बहुत सारे चीजें हैं। इस दुकान के बाहर एक स्टूल है। यह दुकान कच्चा है।

इस बगीचे में छोटे-छोटे हरी-हरी घास है। इस बगीचे के चारों ओर छोटे-छोटे फूल के पौधे हैं जिस पर फूल लगे हुए हैं।

यह डिजाईन जो दिवार के दिवार में बनी हुई है। यह काफी ज्यादा अच्छी लग रही है और यह थ्री डी पेंटिंग है।

यहाँ पर हम देख सकते है कि जिम में बहुत सारे उपकरण रखे गए हैं यहाँ पर बॉडी बनाने के हर तरह के चीज़े मौजूद है यहाँ पर एक युवक फोटो भी अपना ले रहा है और शीशा में अपने आप को देख रहा है।